जंगल दिखाई दे रही है और इन खेतों में कुछ खेतों में पानी भी भरा हुआ है।

बगल में एक खिड़की भी दिखाई दे रही है जो खुली हुई है। जिसके बाहर एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

सामने एक व्यक्ति और उनके दो छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें टीचर भी दिखाई दे रहा है जो शायद क्रिस्टियन भेष भूषा में है और बगल में एक गमला भी रखा हुआ है।

बाल काटते हुए व्यक्ति के बगल में एक साइकिल रखी हुई है और आगे कुछ ठेले लगे हुए है।